कुछ-कुछ जगह पे घास भी दिख रहा हैऔर कुछ-कुछ जगह पर पेड़ का प्रतिबिंब का छाई भी दिख रहा है।

दूर की तरह बड़े-बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और एक कार भी नजर आ रहा है।

रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के ऊपर एक पक्षी जो है वो बैठे हुए डस्टबिन भी दिखाई दे रहे दूर के तरफ लोग भी दिखाई दे रहे --

दो गाछ दानिया नजर आ रहे हैं बहुत सारा फैन झुला हुआ है वो नजर आ रहा है।

और आकाश जो है वो बहुत सुंदर दिख रहा है दूर के तरफ बड़े-बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के ऊपर लिखा गया है इसका--

ये फोटो कैफेटेरिया के अंदर वाला एरिया का फोटो है जहां पे ग्लास का डोर --

एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दिख रहा है जहां पे बास्केट बॉल का ग्राउंड दिख रहा है।

और ये जो अंगूर है वो धो के नहीं रखा गया है वो सूखा खाली रखा गया है।

ग्रिल्स का साइड में जो बाड़ है वो नजर आ रहा है फूलधनिया का जो कलर है वो येलो और ऑरेंज में नजर आ रहे हैं।

फ्रिज डबल डोर का है और जो कलर है वो सीमेंट कलर का ओपन किचन भी है ओपन किचन में बहुत सारा रैक भी किया गया है।

पोंड का जो पानी का जो कलर है वो ग्रीन कलर में है और पोंड के अंदर बड़े-बड़े पेड़ का पतिबीम जो है वो नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी लगाया गया है प्रोजेक्टर में लिखा गया है एंजॉय --

ये स्लाइडर जो है वो मीडियम साइज का है और स्लाइडर का जो कलर है वो येलो ब्लू एंड रेड कलर में है ।

और एक एलोवेरा का पेड़ जो है दिखाई दे रहा है स्नेक प्लांट दिखाई दे रहे हैं मनी प्लांट भी दिखाई दे रहे हैं ।

ये छत के ऊपर जिम का फोटो है ग्रीन कलर का ग्रास का मैट पड़ा हुआ है और रोप भी रखा गया है ।